वो लग रहा है वहाँ पर कोई पहने हुए दिखाई दे रहे है वो वहाँ पर नीले कलर वाइट कलर का दिख रहा है उसका कांच ब्लैक कलर का दिख रहा है वहाँ बहोत सारी बिल्डिंगें कुछ लाइट भी हरी-भरी दिख रही है।

दिख रहा वहाँ पर बहुत सारी बाइक दिख रही है बहुत बाइक रख रहे है वहाँ पर बहोत सारी फीमेल भी दिख रहे कुछ फीमेल हेलमेट लगाए हुए दिखाई दे रहे है कुछ दिख रहे है के पास बहोत सारी बसे भी दिख रही है वो वाइट कलर में दिख रही है।

ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई कटिंग की दुकान है बालो जो कटिंग कर रहा है वो अपने मुँह पर मास्क भी लगाई हुआ है नीला कलर का मास्क भी लगाया है वहां पर वो।

इन्हे पर मुझे कुछः बहुत सारी बिल्डिंगे दिख-दिखा-दिखाई दे रही है बिल्डिंग में वहाँ पर कुछ बहुत सारे फीमेल भी दिखाई दे रही है वहाँ पर खम्बे भी मुझे वाइट मतलब पीले कलर में दिखाई दे रहे है बहुत।

वहाँ पर कांच की बिल्-मतलक बिल्डिंग भी दिख री है वहा पर कुछ चद्दर की छटे लगाई हुई दिखाई दे रही है।